दो चक्का दिखाई मिल रहा है।

एक वॉयर जिसे देखने वाला दिखाई मिल रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक बड़ा सा घर दिखाई मिल रहा है।

इस पिक्चर में मुझे बहुत सारा आदमी दिखाई मिल रहा है।

इक बेंच भी दिखाई मिल रहा है।

इस पिक्चर में मुझे तीन आदमी दिखाई मिल रहा है।

कुछ बर्तन दिखाई मिल रहा है।

कपड़ा भी फंसा दिखाई मिल रहा है।

और इस में लाइट भी एक है।

आसपास में बड़ा बड़ा ग़च्ची दिखाई मिल रहा है।

दो घर दिखाई मिल रहा है।

इस पिक्चर में मुझे दो बच्चा दिखाई मिल रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक घर दिखाई मिल रहा है।

पिक्चर में मुझे तीन इंसान दिखाई मिल रहा है।

ये ये पिक्चर में एक औरत दिखाई मिल रहा है।

पीछे और दिखाई मिल रहा है।

इस पिक्चर में मुझे घर दिखाई मिल रहा है।

कुछ ग्रास भी दिखाई मिल रहा है छोटा छोटा।

कुछ पहाड़ भी दिखाई मिल रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक दुकान दिखाई मिल रहा है।

उसमें बहोत सारा चिप्स दिखाई मिल रहा है।

ऊपर में बोर्ड में चौधरी एंटरप्राइज --

कुछ बैंबू दिखाई मिल रहा है।

डासबिन भी दिखाई मिल रहा है।

ये पिक्चर में मुझे कुछ ग्रीन कारपेट दिखाएं मिल रहा है।

ये पिक्चर में मुझे कुछ रेड कलर का पर्दा दिखाई मिल रहा है।

दुकान के अंदर कुछ स्कर्ट दिखाई मिल रहा है।

दुकान के अंदर मुझे हैंगर दिखाई मिल रहा है।

चेयर भी दिखाई मिल रहा है।

टेबल भी दिखाई मिल रहा है।